यहाँ एक ऐसा ही बोर्ड लगा है और दो कुर्सियां रखी हैं।

टॉय ट्रेन लगा है जहां बहोत सारे पेड़ लगे हैं।